सैलून का दुकान है सैलून के दुकान में समान वगैरह --

साइड में ऑटो भी लगा हुआ --

जैसे भिंडी हो गया गाजर हो गया बैगन हो गया ।